एक सीन दिखाई दे रहा है। यहाँं पर पोस्टर लगा हुआ है जिसमें नीले कलर का नीले कलर से नीले कलर से कलर है इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क --

यहां पर सामने बाइक दिखाई दे रही है जिसमें झूले लगा हुआ है यहां पर सामने सड़क गई हुई ब्लैक कलर की है यहां देखने में दिन का सीन लगा --

सामने मैदान दिखाई दे रहा है जो पीले कलर का है यहां पर कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं यह जो साइकिल रखे हुए है बहुत सारी यहां पें एक खंबा दिखाई दे रहा है सफेद कलर से पोता हुआ है।

यहाँ पीछे इनके पीछे खंब कुछ वृक्ष लगे हुए हैं जो ग्रीन कलर के हैं यहाँ पर एक खंभा दिखाई दे रहा है यहाँ पर रोड दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है इसमें पानी भरा हुआ है।